ये एक प्रकार के बाँध है जो गहरा है और उसमे से अअअ बहुत सारा पानी को निचे गिरा जा रहा है।

वृक्ष है बरसात का मौसम है वे बादल बहुत छाए है --]

--मे एक घास का मैदान हैं तम्बू टंगे हैं और एक आदमी कुर्सी पर बैठा है छतरी लगा है।

यहाँ के पार्किंग में खड़ा हुआ है और पीछे ऑफिस लगा हुआ है लेकिन रोड पार्किंग है।